यहाँ पे एक दो कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे खिड़कियां है जो रसरियों की बनी हुई है जो जाल की तरह है।

इसके आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा और हरियाली भी बहुत है।

बहोत अच्छा गार्डन है। इसके अंदर बहोत सारे स्विमिंग पूल और छोंन न घिसखने वाले झूले हैं। एक पाइप से बना यहाँ पे जो इसके बाहर एक स्विमिंग पूल है। जहाँ पे एक हरा पानी है।

यह एक फार्म हाउस है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है। ये मक यहां पे एक मकान भी बना हुआ है।

आस पास मशीने रखे हुई हैं। यहाँ पे एक दफ़न दिख रहा हैं जो गोर रंग का है।

जो स्टील की है । इसके आस पास बहुत पेड़ पौधे है और पहाड़ भी है पहाड़ सफेद रंग के है उनपे कुछ पत्ते --

उसके आगे एक कार खड़ी है जो सफ़ेद रंग की है सड़क पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे है उसके आस पास बहुत सारे मकान हैं ।

यहाँ पे एक नदी है। जिस में एक नवाइया है जो नील रंग की है जो लकड़ी की बनी हुए है। इसके आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे है ।

यह कार्यालय है जो बहुत ही बड़ा है और काफी इसका रंग लाल और सफेद रंग है इसका चैनल काले रंग का है जो लोहे का बना हुआ है।

कमरा है जो की बहोत ही खूबसूरत हैं| इसके अंदर एक स्टेज रखा हुए हैं और ये गुब्बाड़ो से सजा हैं| इस के अन्दर रॉड लगीं हुई हैं और एक दो पंखे लगे हुए हैं| इसके पास में बहोत सारे गुलदस्ते रखें हैं।

मंच है जो बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है यह फूलों और गुबारों से अ सजावट की गई है यहाँ पे एक सोफा है जो काले और लाल रंग का है इसके नीचे एक कालीन बिछी है जो लाल और पीले रंग की है।

पहाड़ी इलाका है जो नील रंगका है | आसमान नीला है सफ़ेद दिख रहा है | यहाँ पे बहोत सारे पेड़ पोधे है। इन पहाड़ों पर छोटी छोटी घास लगी हुए है | इसके पहाड़ों के पास में है जो की ईटों से बना हुआ है ।

मंदिर सा बना हुआ है जिस जिसकी जाल की तरह ईटों की जाल की तरह बना हुआ है। यहाँ का मोसम बोहोत ही अच्छा है।

गेस्ट हाउस है जो बहोत ही खूबसूरत है | इसमें बहोत सारी लाइट जल रही है और ग्राउंड में एक दो पर्दे टांगे हुए है | जो की गुलाबी और सफ़ेद रंग है ।